बगल में एक ठो येलो रंग का बोर्ड भी है ऊपर बहुत सारा कार्टून रखा हुआ है।

पर सफेद रंग का छज्जा भी है और बहुत सारा बगल मे ग्रिल लगा हुआ है और बहुत सारा गाड़ी भी है।

लगा हुआ है एक वो आदमी सफेद रंग का टोपी भी पहना हुआ है एक आदमी झुक के सामान निकाल रहा है पीछे बहुत सारी किताबें हैं।

ग्रीन कलर का फ्लोर मैट है दरवाजा है बगल से सीढ़ी जा रहा है।

बोर्ड भी है जिसमें अलग भाषा मे कुछ लिखा हुआ है ऊपर लाइट भी लगा हुआ है।

बगल में बहुत सारे आदमी अंदर जा रहे हैं अंदर लाल और व्हाईट रंग का बैलून भी है।

यह एक किराने का दुकान का फोटो है जिस तरह बहुत सारा अगरबत्ती है अलग अलग कंपनी का और उस तरफ मैगी भी है।

नीचे चिंग्स का नूडल्स रखा हुआ है। और इधर बहुत सारा अगरबत्ती है और सारा कुछ रैक में रखा हुआ है।

एक आदमी हाथ मोड़ के खड़ा हुआ है और बहुत सारे बाइक जो है बनाने आए है और बहुत सारे बाइक खुले हुए हैं पूरे।

ऊपर आसमान में सफेद रंग के बादल हैं एक ठो पुल भी है बहुत सारा तार भी गया हुआ है।

बगल में टेंपू खड़ा हुआ है। टेंपू के अपोजिट तरफ एक आदमी साइकिल से जा रहा है।

काउंटर रखा हुआ है और अलमारी में लाल ब्लैक कलर का बैग है।

जो बहुत बड़ा मूर्ति है उसमें बहुत सारे गेंदे के फूल लगे हुए हैं।

यह चित्र मे एक घर बन रहा है।

सारे गिटार उसके हैंगर में लगे हुए हैं ऊपर व्हाइट कलर का लाइट भी है अ बगल में ब्लू कलर का डिजाइनर लाइट है।

इस तरह बहुत सारा बांस रखा हुआ है एक तो लेबर भी खड़ा है एक और लेबर खड़ा है जो लाल रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

उसके साइड में और भी एक ब्लैक कलर का कार खड़ा हुआ है।

यह चित्र में एक पुस्तक भंडार दिख रहा है यहां बहुत सारे किताब कॉपी और पेन मिल रहे हैं बगल में एक बाइक भी खड़ा हुआ है सुपर स्प्लेंडर।

यह एक शादी एवं मैरेज हॉल का फोटो है जहां सीढ़ी पर लाल रंग का कारपेट लगा हुआ है बगल में बड़ा बड़ा गमला लगा हुआ है।

पीछे बहुत सारा पंख लगा हुआ है एक आदमी भी ट्रे से कुछ निकल रहा है ट्रे ब्लू कलर का है।

यह एक बहुत बड़ा सा म्यूज़ियम जैसा जगह है जो पूरा पत्थर का बटा है पूरा ग्रे कलर का है।

एक आदमी व्हाइट कलर का कुर्ता पहन के खड़ा है बहुत लोग स्टेशन के पास सोए हुए हैं।